यहां पे एक बस खड़ी होती है सफेद कलर की।

यहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है।

गार्ड के पीछे ही तीन से चार लोग बात कर रहे होते हैं।

साइड में ही छोटे छोटे गुलाब के पेड़ भी लगे होते हैं।

एक लोग साइकिल से यहां पे जा रहे होते हैं।

सोफे के पीछे ही छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं।

यहां पे एक बोर्ड लगा होता है।

यहाँ पे एक कर्मचारी बैठ कर के काम कर रहा होता है।

एक व्यक्ति यहां पे लाल कलर की टी शर्ट पहन कर के खड़ा होता है।